और यहां पर दो बाइक भी लगे हुए हैं।

और यहां पे कई सारे शीशे भी लगे हुए हैं और यहां एक आदमी भी खड़ा--

और यहां पर ऊपर व्हाइट कलर से रंगा गया भी है।

यह दृश्य में तीन ठे शटर लगे हुए हैं और यहां एक बाइक लगा हुआ है।

है और यहां पर एक दो बहुत सारे फूल लगे हुए हैं यहां पे दो केला के पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां पे ऊपर दीवालो पे कुछ लिखा गया है।

यहां प लाइट भी लगे हुए हैं और यहां पे बोटल भी रखे हुए हैं।

यहां आसमान भी है नीचे घास है।

आधे से मे कई सारे स्टील के पाईप खडे हुए है।

और यहां पर येलो रंग से पेंट किया गया है वाइट कलर का एक बोर्ड भी है।

और यहां पर भी लटका हुआ है यहां पर कलर का बॉक्स रखा हुआ भी है।

और ढ़ेर सारे फूल है यहां पर टाइल्स भी बिछा है।

यह दृश्य एक डैम का है जिसमें बहोत सारा पानी भी है यहां पर पेड़ पौधे भी है।

यहां पर गेट भी है यहां पर ढेर सारे बोर्ड भी है और यहां पर बहुत सारे कपड़े भी है और यहां मेकअप के भी बहुत सारे सामान है।

यह दृश्य एक पेट्रोल टंकी का है जहां पर अभी रात का समय है और यहां पर कई सारे लोग हैं।

सारे लोग अपने बाइक पर है यहां पर एक रेड कलर का पाइप भी रखा हुआ है।

और यहां पर कई सारे लड़के भी हैं और यहां स्टील के गेट भी लगे हुए हैं।

यह दृश्य में एक बस स्टैंड का दृश्य दिखाया गया है और यहां पर कई सारे बस लगे हुए हैं।

और यहां पर दीवाल व्हाइट कलर से रंगा हुआ है यहां पर तौलने की मशीन भी रखी हुई है और यहां पर डिब्बे भी है।

और यहां पे कुछ लटके हुए भी हैं।